लिनक्स फ़ाइल अट्रिब्यूट के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के लिए आप को पहले से ही एक्जाम्पल1 एक्जाम्पल2 एक्जाम्पल3 एक्जाम्पल4 एक्जाम्पल5 और टेस्टचाउन के रूप में नामित खाली फाइलों को बनाना होगा
कृपया test chown नाम की खाली डाइरेक्टरीस और डाइरेक्टरी 1 को भी बनाएँ
000025 000023 फ़ाइल अट्रिब्यूट एक मेटाडाटा मेटाडेटा है जो वर्णन करता है या एक कंप्यूटर फाइल के साथ जुड़ा हुआ है
फ़ाइल अट्रिब्यूट फ़ाइल के मालिक फ़ाइल के प्रकार उपयोग अनुमतियाँ आदि विशेषताओं का वर्णन करता है
चौन कमांड का इस्तेमाल फ़ाइल या डारेक्टरी के मालिक को बदलने के लिए करते हैं
यह एक एडमिन कमांड है जिससे केवल रूट यूजर फाइल या डाइरेक्टरी के मालिक को बदल सकता है
चौन कमांड का रचनाक्रम सिन्टैक्स इस प्रकार है स्पेस ऑप्शन स्पेस ओनरनेम स्पेस फाइलनेम या डाइरेक्टरीनेम
हम चौन कमांड के साथ निम्न विकल्प दे सकते हैं
R160 जो डाइरेक्टरी की सब डाइरेक्टरीज़ हैं उनकी फ़ाइलों की अनुमति को बदलने के लिए जहाँ आप फिलहाल हैं
c160 प्रत्येक फ़ाइल की अनुमति को बदलने के लिए
f160 च ओवन को एरर मेसेज प्रदर्शित करने से रोकता है
अब हम चौन के कुछ उदाहरण देखेंगे
अतः टर्मिनल पर जाएँ
अब हम उस डाइरेक्टरी में जायेंगे जहाँ हमने खाली फाइलें और फोल्डर बनाये थे
उसके लिए सीडी स्पेस डेस्कटॉप स्लैश फाइल एट्रीब्यूट टाइप करें और एंटर दबायें
अब कमांड एलएस स्पेस l स्पेसटेस्टचाउन थाट इस t e s t c h o w एन टाइप करें और एंटर दबायें
यहाँ हम फाइल के मालिकओनर को देख सकते हैं शाहिद टेस्टचाउन का मालिकओनर है
फ़ाइल के मालिकओनर को बदलने के लिए सुडो स्पेस c ह ओवन स्पेस थाट इस a n u s h आ अनुशा स्पेस टेस्टचाउन थाट इस t e s t c h o w एन कमांड टाइप करें और एंटर दबायें
सुडो पासवर्ड को एंटर करें और फिर से एंटर दबायें
अब एलएस स्पेस l स्पेस t e s t c h o w एन टाइप करें और एंटर दबायें
यहाँ आप देख सकते हैं कि फाइल की नई मालिकओनर अनुषा है
अब हम देखेंगे कि डाइरेक्टरी के मालिकओनर को कैसे बदलते हैं
एलएस -l कमांड टाइप करें और एंटर दबायें
यहाँ हम देख सकते हैं कि शाहिद test chown डाइरेक्टरी का मालिकओनर है
डाइरेक्टरी के मालिकओनर को बदलने के लिए इस कमांड को टाइप करें
सुडो स्पेस चौन स्पेस माइनस कैपिटल र स्पेस a n u s h आ अनुशा spacetest chown जो डाइरेक्टरी का नाम है और एंटर दबायें
यदि जरूरत हो तो सुडो पासवर्ड को एंटर करें और फिर से एंटर दबायें
हमारी सहूलियत के लिए मैं CTRLL प्रेस करके स्क्रीन को साफ करती हूँ
अब एलएस स्पेस -l टाइप करें और एंटर दबायें
यहाँ हम देख सकते हैं कि अनुषा डाइरेक्टरी की नई ओनर है
चमोड़ कमांड का प्रयोग एक से अधिक फ़ाइलों का उपयोग यानि एक्सेस मोड या अनुमति को बदलने के लिए करते हैं
चमोड़ कमांड का रचनाक्रमसीनटैक्स इस प्रकार है चमोड़ स्पेस options स्पेस मोडे स्पेस फाइलनेम स्पेस चमोड़ स्पेस options स्पेस फाइलनेम
हम चमोड़ कमांड के साथ निम्न विकल्प दे सकते हैं
cबदली हुई फ़ाइल्स की जानकारी को प्रिंट करने के लिए
fchmod जिन फ़ाइल्स को नहीं बदल सकता उनकी सूचना यूजर को न देने के लिए
निम्न प्रकार के ऐस्सेस या अनुमतियां हैं
r रीड अर्थात पढ़ना w राइट अर्थात लिखना x एक्जीक्यूट अर्थात निष्पादित करना s यूजर या ग्रुप की इद को सेट करना
वैकल्पिक रूप से हम तीन अंकों की अष्टाधारी संख्या अर्थात three डिजिट ओक्टल नंबर से अनुमतियाँ निर्दिष्ट कर सकते हैं
पहला अंक मालिक की अनुमति के लिए है दूसरा अंक समूह की अनुमति के लिए है और तीसरा अंक दूसरों की अनुमति के लिए है
अनुमतियों की गणना निम्नलिखित अष्टाधारी मूल्यों को जोड़कर की जाती है 4 रीड पढ़ना 2 Writeलिखना 1 Executeनिष्पादित करना अब हम चमोड़ के कुछ उदाहरण देखेंगे टर्मिनल पर जाएँ और execute by यूजर अनुमति को फाइल एक्जाम्पल1 में जोड़ने के लिए कमांड एंटर करें
उससे पहले मैं CTRLL से स्क्रीन को क्लिअर करती हूँ
अब चमोड़ स्पेस ux स्पेस एक्जाम्पल1 टाइप करें और एंटर दबायें
अब एलएस स्पेस l स्पेस एक्जाम्पल1 टाइप करें और बदलाव को देखने के लिए एंटर दबायें
ओनर मालिक द्वारा readwriteएक्जीक्यूट अनुमतिग्रुप द्वारा readएक्जीक्यूट अनुमति और दूसरों द्वारा execute ओनली अनुमति को फाइल एक्जाम्पल1 को निर्दिष्ट करने के लिए
अब चमोड़ स्पेस 751 स्पेस एक्जाम्पल1 कमांड टाइप करें और एंटर दबायें
अब एलएस स्पेस l स्पेस example1टाइप करें और एंटर दबायें
हम देख सकते हैं कि ऊपर दिए कमांड से ओनर द्वारा readwriteएक्जीक्यूट की अनुमति ग्रुप द्वारा readराइट की अनुमति और दूसरों द्वारा execute ओनली की अनुमति को फाइल एक्जाम्पल1 में निर्दिष्ट किया गया है
फाइल एक्जाम्पल1 को सभी के लिए read ओनली अनुमति निर्दिष्ट करने के लिए इस कमांड चमोड़ स्पेस r स्पेस एक्जाम्पल1 को टाइप करें और एंटर दबायें
अब एलएस स्पेस l स्पेस एक्जाम्पल1 कमांड टाइप करें और एंटर दबायें
यहाँ हम देख सकते हैं कि सभी यूज़र्स के लिए फाइल एक्जाम्पल1 को read ओनली अनुमति निर्दिष्ट की गयी है
अनुमति को बारी बारी से बदलने और सभी यूजर्स के लिए read and एक्जीक्यूट एक्सेस को निर्दिष्ट करने के लिए और डाइरेक्टरी 1 डाइरेक्टरी के ओनर को write एक्सेस देने के लिए कमांड टाइप करें
चमोड़ स्पेस माइनस कैपिटल र स्पेस 755 स्पेस डायरेक्ट्री1 एंटर दबायें
अब एलएस स्पेस -l टाइप करें और बदलाव देखने के लिए एंटर दबायें
यूज़र को फाइल एक्जाम्पल2 में एक्जीक्यूट अनुमति देने के लिए चमोड़ स्पेस ux स्पेस एक्जाम्पल2 कमांड टाइप करें और एंटर दबायें
अब एलएस स्पेस l स्पेस एक्जाम्पल2 कमांड टाइप करें और एंटर दबायें
अब हम देख सकते हैं कि यूजर को फाइल एक्जाम्पल2 में एक्जीक्यूट अनुमति निर्दिष्ट की गयी है
फाइल एक्जाम्पल3 को ग्रुप के लिए राइट अनुमति जोड़ने के लिए इस कमांड चमोड़ स्पेस gw स्पेस एक्जाम्पल3 को टाइप करें और एंटर दबायें
और अब एलएस स्पेस l स्पेस एक्जाम्पल3 टाइप करें और एंटर दबायें
अब हम देख सकते हैं कि ग्रुप में राइट अनुमति जोड़ी गयी है
सभी यूज़र्स के लिए राइट अनुमति हटाने के लिए चमोड़ स्पेस a द्व स्पेस एक्जाम्पल3 कमांड टाइप करें और एंटर दबायें
अब एलएस स्पेस l स्पेस एक्जाम्पल3 टाइप करें और एंटर दबायें
अब हम देख सकते हैं कि राइट अनुमति को सभी यूजर्स के लिए हटाया गया है
सीएचजीआरपी कमांड का उपयोग एक से अधिक फाइल्स के ग्रुप को नए ग्रुप में बदलने के लिए करते हैं
न्यूग्रुप या तो एक ग्रुप इद नम्बर है या फिर etcgroup में स्थित एक ग्रुप का नाम है
केवल फाइल का ओनर या एक प्रिविलेज्ड यूजर विशेषाधिकारी उपयोगकर्ता ही ग्रुप को बदल सकता है
सीएचजीआरपी कमांड का रचनाक्रम सिन्टैक्स इस प्रकार है सीएचजीआरपी स्पेस options स्पेस न्यूग्रुप स्पेस फाइल्स स्पेस सीएचजीआरपी स्पेस options
अब हम टर्मिनल पर चलते हैं और सीएचजीआरपी कमांड के कुछ उदाहरण देखते हैं
एलएस स्पेस l स्पेस एक्जाम्पल4 कमांड टाइप करें और एंटर दबायें
अब हम देख सकते हैं कि ग्रुप अनुमति यूज़र शाहिद के लिए है
ग्रुप अनुमति को बदलने के लिए कमांड सुडो स्पेस सीएचजीआरपी स्पेस रोहित स्पेस एक्जाम्पल4 टाइप करें और एंटर दबायें
एंटर दबायें
यदि आवश्कता हो तो सुडो पासवर्ड को एंटर करें
अब एलएस स्पेस l स्पेस एक्जाम्पल4 कमांड टाइप करें और एंटर दबायें
अब हम देख सकते हैं कि ग्रुप शाहिद से बदलकर रोहित बन गया है
आइनोड संख्या एक अद्वितीय पूर्णांक है जो डिवाइस को सौंपा जाता है
आइनोड एक नियमित फाइल या डाइरेक्टरी के बारे में मूल जानकारी स्टोर करता है
सभी फ़ाइल्स आइनोड के लिए हार्ड लिंक्स हैं
जब भी कोई प्रोग्रामनाम से एक फाइल संदर्भित करता है तब सिस्टम अनुरूपी आइनोड को उस फाइल के नाम से खोजता है
हम फाइल के आइनोड नम्बर देखने के लिए एलएस स्पेस i कमांड का उपयोग कर सकते हैं
एलएस स्पेस i स्पेस एक्जाम्पल5 कमांड टाइप करें और एंटर दबायें
फ़ाइल के पहले लिखी संख्या फ़ाइल का आइनोड नंबर है
आइनोड निश्चित रूप से एक समय पर केवल एक ही एंट्री से जुड़े रहते हैं
हार्ड लिंक्स एक अकेले आइनोड से एकाधिक डाइरेक्टरी एन्ट्रीज़ से जुड़ सकते हैं
लिंक बनाने के लिए ल्न कमांड है
001252 001156 हार्ड लिंक बनाने के लिए ल्न कमांड का रचनाक्रम सिन्टैक्स इस प्रकार है
ल्न स्पेस सोर्स स्पेस लिंक जहाँ सोर्स एक मौजूदा फाइल है और लिंक वो फाइल है जो बनानी है
अब हम हार्ड लिंक्स के कुछ उदाहरण देखेंगे
मैं फिर से स्क्रीन साफ करती हूँ
अब ल्न स्पेस एक्जाम्पल1 स्पेस एक्जाम्पलेल्न कमांड टाइप करें और एंटर दबायें
अब दोनों फाइल्स के आइनोड नंबर का प्रदर्शन करने के लिए एलएस स्पेस i स्पेस एक्जाम्पल1 स्पेस एक्जाम्पलेल्न कमांड टाइप करें और एंटर दबायें
अब हम देख सकते हैं कि दोनों फाइल्स के आइनोड नंबर समान हैं फाइल एक्जाम्पल1 का हार्ड लिंक फाइल एक्जाम्पलेल्न है
सोफ्ट लिंक एक विशेष प्रकार की फाइल है जिसमें दूसरे फाइल या डाइरेक्टरी का रेफरेंस अर्थात संदर्भ है जो पूर्ण या रिलेटिव अर्थात संबंधित पाथ के रूप में है
सोफ्ट लिंक बनाने के लिए ल्न कमांड का रचनाक्रम सिन्टैक्स इस प्रकार है
ल्न स्पेस s स्पेस target filename स्पेस symbolic filename अब हम सोफ्ट लिंक्स के कुछ उदाहरण देखेंगे
सोफ्ट लिंक को बनाने के लिए ल्न स्पेस s स्पेस एक्जाम्पल1 स्पेस एक्जाम्पलसॉफ्ट कमांड टाइप करें
एंटर दबायें
अब दोनों फाइल्स के आइनोड नंबर और सूची का प्रदर्शन करने के लिए एलएस स्पेस li स्पेस एक्जाम्पल1 स्पेस एक्जाम्पलसॉफ्ट कमांड टाइप करें
एंटर दबायें
अब हम देख सकते हैं कि दोनों फाइल्स के आइनोड नंबर अलग हैं एक्जाम्पल1 का सोफ्ट लिंक एक्जाम्पलसॉफ्ट है
अतः इस ट्यूटोरियल में हमने लिनक्स फ़ाइल अट्रिब्युट्स के बारे में सीखा जैसे फाइल की अनुमति ओनरशीप और ग्रुप को बदलना
हमने फाइल के आइनोड सोफ्ट और हार्ड लिंक्स के बारे में भी सीखा
इसी के साथ मैं इस ट्यूटोरियल को समाप्त करती हूँ